ये एक बुक का शॉप है।

इसके पीछे छोटे छोटे स्टॉल है और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

एक औरत इस चाय के शॉप में है।

अंदर में एक फैन भी है।

ये कार वाश करने का गैरेज है।

ये एक फोन का शॉप है।

बाहर एक बाइक रखा हुआ है।

कैफे के अंदर बहोत कुछ सजाया हुआ है।

दो तरफ दो फैन है।

उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ है छोटे छोटे घर सब है ये--

ये घर का किचन है।

एक बेसिन है और नीचे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे ड्रावर हैं।

साइड में एक चेयर भी है।

सामने टोल टैक्स का गेट है।

साइड में एक बाइक है।

यहां पे एक ग्राउंड दिख रहा है और एक गेट भी है।

ग्रिल का गेट है और गेट के बाद बाहर बहुत बड़े बड़े पेड़ है सुपारी का और छोटे छोटे घर सब है।

के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है।

यहां एक खाली सा रास्ता दिखाई दे रहा है।